जे समुंदर है और यहाँ पर दो नाव है और आसमान है और पेड़- पौधे है पत्थर है और समुद्र है आउ यहाँ घूमने आ सकते है लोग बहुत अच्छा जगह है आ --

ये नाईट का समय है और यहाँ बेंच लगा है और चाँद भी दिखाई दे रहा है और पड़े आसमान भी दिखाई दे रहा है और लाइट जल रहा है और--

ये जंगल है और पाँच जने जा रहे है जंगल की और और बादल भी मस्त है और पेड़ पौधे है ।

ये एक एरोप्लेन है और ये बहोत अच्छा मतलब कही भी जाने के लिए मस्त तुरंत कम समय मे काही भी जा सकते हैं।

इसके यहाँ मतलब दुकान मे बहोत सारी खाने के लिए जाते हैं और पीछे पेप्सी का बॉटल भी हैं और--

ये किसी चीज का दवाई का दुकान है जिसमें हर प्रकार का दवाई दिखाई दे रहा है और यहाँ मिलता है और मतलब बो--बोटल में पैक हैं और--